और यहां पर एक घड़ी भी नजर आ रहा है।

और कुर्सी में दो औरत बैठी हुई नजर आ रही है।

यहां पर बहुत बड़ा घर नजर आ रहा है।

और यहां पर ये टार सब भी रखा हुआ नजर आ रहा है है ।

और यहां पर ही सामने में दो दो रस्सी रखा हुआ भी नजर आ रहा है।

और यहां पर ये लाल काउंटर भी नजर आ रहा है।

और यहाँ पर ये काँच वाला फ्रीज भी नज़र आ रहा है।

अलमारी का बगल में टी_वी लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इसका खिड़की का पर्दा भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

में सेलो टेप भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और पहाड़ के नीचे घर सब भी नजर आ रहे हैं।

यह एक होटल नजर आ रहा है।

जमीन में टाइल्स भी नजर आ रहा है।

घर का बगल में एक बड़ा बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

यहां पर ये धूल उड़ता हुआ नजर आ रहा है।

और हॉस्पिटल में बहुत सारा बैलून भी नजर आ रहा है।